एक सलून दिखाइ दे रहा है जिसके बाहर लाल रंग का बोर्ड लगा हुआ है जिस पर इंग्लिश और हिन्दी से सलून का नाम लिखा हुआ है। सलून के अंदर कांच का गेट लगा हुआ है और सलून के बाहर एक लड़का खड़ा हुआ फोटो घिचाता हुआ नजर आ रहा है।

अंदर काफी सारा पत्थर पड़े हुये दिख रहे हैं। एक मजदूर अपने सर पर एक तगाड़ी में कुछ पत्थर ढ़ोता हुआ दिखाई दे रहा है। तीन प्लास्टिक की कुर्सियां रखी हैं एक आदमी फोन में बात करता हुआ नज़र आ रहा है एक लकड़ी की सीढ़ी भी दिख रही है।

पर एक बस स्टैन्ड दिखाइ दे रहा है जहां पर एक बस खड़ी हुई है जिस पर कुछ लिखा हुआ है। बस नीले और सफेद रंग की है। बस के सामने एक आटो खड़ा हुआ है जिस पर कुछ लोग सामान लादते हुए नजर आ रहे हैं।

यहाँ पर एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है जिसके सामने कुछ जगह खाली है। जहां पर बिच - बिच में कुछ पोधे लगे हुए हैं और कुछ घांस वाले पोधे भी उगे हुए दिखयी दे रहे हैं।

सामने एक स्क्रीन है। एक डॉक्टर किसी पेशेंट के पेट पर किसी तरह की हलचल करते हुए देख रहा है।

टेबल पर कई सारी दवाई और टैबलेट्स रखी हुए नजर आ रही हैं। ये आदमी कुछ पर्ची में लिखता हुआ दिखाई दे रहा है अगल- बगल और दो आदमी बैठे हुए हैं और काफी भीड़ भी है।

इसके ऊपर की छत टीन की शेड से बनाई गयी है सामने एक और छोटा सा छज्जा निकला हुआ है रेस्टोरेंट के बाहर काफी भीड़ दिखाई दे रही है एक रिक्शा भी खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। और कुछ लोग भी पैदल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं |

ऊपर एक चौड़ी सी सड़क दिखाई दे रही है जिसके बगल में ऑरेंज कलर की एक ऊँची सी बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही है। जिस परपर दर परत कुछ गुम्बज बने हुए दिखाई दे रहे हैं जो की गोलाकार है |

किसी स्कुल का एक अ एनुअल फंक्शन होता हुआ दिखायी दे रहा है यहाँ पर एक स्टेज बनाया गया है जिस पर रेड और ब्लैक कलर की लाइट बिछी हुई है।